तेजी से ट्रेन की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग ट्रेन में--

और इस ग्राउंड में बड़ा सा एक लाइट जल रहा है।

आ दस बारह बिल्डिंगे जोकि लाइन से लगी हुई हैं।

और इसमें बहोत ही ज्यादा बीस तीस खिड़कियां छोटी छोटी जंगले में--